फूल लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं।

इधर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है काफी बसें खड़ी हुई भी दूर से दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के नीचे दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

काफी पत्थर भी दिखाई दे रहे है और सभी कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे--

काफी चीजें भी दिखाई दे रही है कुछ पीले रंग के पैकेट भी दिखाई दे रहे है काफी सारी बॉल पेन के पैकेट भी दिखाई दे रहे है।

बादल सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

काफी लोगो के पास हरी कार्पेट दिखाई दे रही है।

सामने काफी लोग दिखाई दे रहें हैं काफी लोग होली खेल रहें हैं सबके गुलाबी रंग के कलर दिखाई दे रहें हैं कपडे के।

आसमान एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है पीछे काफी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे के पत्ते हरे भरे दिखाई दे रहे है।

सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं पेड़ के पत्ते हरे हरे दिखाई दे रहे हैं नीचे काफी सारी गाड़िया दिखाई दे रही हैं।

पीछे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पेड़ के पत्ते हरे भरे दिखाई दे रहे है।

एक कार भी दिखाई दे रही है।

इसके नीचे काफी सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

और भी चीजें दिखाई दे रही है सामने लाइट दिखाई दे रही है लाइट जल रही है।

सामने एक कार दिखाई दे रही है।

पर काफी पेड़ पत्ते भी दिखाई दे रहे है जिसके पत्ते हरे भरे दिखाई दे रहे है।

सामने पड़दा भी दिखाई दे रहा हैं पड़दा सफेद रंग का दिखाई दे रहा हैं।

जहां पे काफी सारे फ्रूट दिखाई दे रहें हैं।

सामने एक मंडप दिखाई दे रहा है मंडप में काफी सारी डेकोरेशन दिखाई दे रही है काफी फूल--

सामने आसमान दिखाई दे रहा है आसमान ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है।

काफी सारा मैदान भी दिखाई दे रहा है और काफी सारी मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान काला दिखाई दे रहा है।

शटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है।